इसके ठीक सामने बहुत सारे पत्थर हैं।

यहां एक आदमी खड़ा भी हुआ है ऊपर बहोत सारे बैलूने लगी है जो की अलग अलग कलर की है।

भीतर एक दुकानदार खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है बिल्डिंग के ठीक आगे एक पेड़ नजर आ रही है खंभे पर बहुत सारे तार लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

और उसके दोनों और बहुत सारी छोटे छोटे पौधे और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बहोत बड़ी बड़ी पेड़ नजर आ रही है।

पीछे एक बिल्डिंग है जिसका रंग मैरून रंग से रंगा गया है पीछे आकाश साफ दिख रहा है।

इसके ठीक सामने कुछ गाड़ियां पार्क की हुई है।

पिछे आसमान में बादल छाए हुए हैं।

रोड पर दो लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक सब्जी मंडी है जिसमें बहुत सारे लोग सब्जियां बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक पुरुष नाचते हुए नजर आ रहा है।

उसकी एक हाथ ऊपर की हुई है तो दूसरी हाथ नीचे की हुई है।

यह एक एच_डी_एफ_सी बैंक की ए_टी_एम है।

पीछे आसमान साफ दिखाई दे रहा है।

पीछे दो अशोक चक्र दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बैलून भी टंगी हुई है दीवार पर कुछ पोस्टर भी लग--

यहा छोटी छोटी ईंट के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं।

यह एक दुकान है जिसके बाहर एक पोस्टर लगी है पोस्टर पर एल_आई_एम_बी_टेक अस्सिटिव हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है।

के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ है।

थर्मोकोल से बनी हुई समान दिखाई दे रही है कुछ आर्टिफिशियल फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर कुछ जिग जैग ब्लू लाइट भी है।

यह एक बिल्डिंग है जिसके दोनों ओर ग्रीन रंग से रंगा गया है जबकि बीच वाला एरिया येलो रंग से रंगा गया है।

उसके ठीक सामने एक पोस्टर है जिसमें यस बॉस सैलून लिखा हुआ है।

यह एक मैरिज हाल है जिसका नाम द हेरिटेज रखा गया है।